एक दुकान है जिसके एक मैन द्वार है उसके नीचे ग्रीन कार्पेट बिछा हुआ है।

किसी टॉकीज की इमेज है जिसमें हमे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई नजर रही है कुछ लोग है जो बैठे हुए है और कुछ लोग खड़े हुए है।

एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का इमेज है जिसका मैन द्वार खुला हुआ है ये हॉस्पिटल में--

ये किसी एजुकेशन पॉइंट का एजुकेशन पॉइंट का ऊ इमेज है।

इसके आसपास बड़े-बड़े खेत है और पेड़-पौधे है इस तालाब के उस पार एक सिटी बनी हुई है।

ये इमेज एक डेरी की इमेज है इस इमेज के बाहर कुछ लोग खड़े हुए है।

इस ऑटो मे एक पहिया आगे की तरफ दिख रहा है इस ऑटो मे लाइट है ऊपर एक येलो कलर का स्टैन्ड रखा हुआ है।